ब्लू कलर की कुछ जालियां भी लगी हुई है जोकि रंग बिरंगी देखे में बोहोत सुंदर पेड़ भी दिखाई दे रहे है और वहाँ पर घास भी लगी हुई है और काले कलर का पानी भी दिखाई दे रहा है नीले कलर का--

बहोत अँधेरा लगा हुआ है वहाँ पर बहोत सारी बत्ती लगी हुई है और देखने में बहोत सुन्दर लग रहा है एक लाल कलर का इसमें लगा हुआ है और एक अगरबत्ती भी लगी है जिसमें से धुआँ अकड़ रहा है देखने में बहोत सुन्दर लग रहा है।

यहाँ पर एक मम्म मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा वहाँ कलर भी नही हुआ है जो कि बहुत देखने में सुंदर लग रहा है वहाँ पर बहुत सारी ईटे भी लगी हुई है।

दिखाई दे रहा है जोकि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में और औरत भी दिखाई दे रही है जो की एक मांग भरी बी--

यहाँ पर मुझे चार पांच आदमी दिखाई दे रहे है जोकि देखने में बहुत ही खराब लग रहे हैं यहाँ पर एक एक बगोना में बोहोत पानी भरा हुआ है और बहुत सारी मछलियाँ बेझाये हुए जोकि बहुत सारी बिछाये हुए और बोहोत सारी को काट रहे है।